बाहर में स्कूटी भी पार्क कर के रखा है।

मुझे इस तस्वीर में ऑरेंज कलर का जेसीबी दिखाई दे रहा है।

टेबल भी दिखाई दे रहा है उसका ऊपर में इस्टील का टिफिन भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारा मनुष्य दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का ब्लैक कलर का येलो कलर का बैलून भी लगा के रखा है।

दीवार में स्विचबॉक्स भी लगा के रखा है।

साइट में एक तिना का घर भी दिख रहा है।

दूर में बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में जीझस क्रॉस का वाल में टंगाके रखा है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारा मनुष्य दिखाई दे रहा है।

साइड में बरा सा ब्लू कलर का बैनर भी लगा के रखा है।

दूर में एक ब्लैक कलर का बैनर भी लगा के रखा है।

रोड साइड में बहुत सारा पेड़ पौधा भी लगा के रखा है।

ड्रॉर के अंदर बहुत सारा मीठा तेल भी रखा हुआ है।

साइड में प्लास्टिक का बकेट भी रखा है।

और बहोत सारा पेड़ पौधा भी उगा के रखा है।

मुझे इस तस्वीर में तीना का घर दिखाई दे रहा है।

दूर में बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिख रहा है।

गेट के ऊपर में दो फ्लैग भी लगा के राखा है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा फील्ड दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारा मनुष्य खेल रहा है।

पीछे बहोत बड़ा बड़ा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

सामने में छोटा छोटा फूल और पेड़ रखा हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा मनुष्य दिखाई दे रहा है।

और लाइट बल्ब भी जलाके रखा है।

और ऑरेंज कलर का फूल भी टंगा के रखा है।